बीच का कुछ हिस्सा लाल-लाल दिख रहा है पीछे एक लाल रंग का पहाड़ जैसा भी दिख रहा है उसके आस-पास में बड़े-बड़े हरे रंग के झाड लगे हुए है ।

सामने के तरफ चार पिलर लगे है सफ़ेद रंग के ऊपर एक गुम्बद जैसा बना है और उसके ऊपर कुछ डिजाईन बनी है शायद एक प्लस का निशान भी लगा है।

इसमें बड़े - बड़े पहाड़ दिख रहे है शाम का या सुबह का समय होने के कारण तस्वीर धुंधली है।

पीछे की दीवार हरे रंग की है बीच में दरवाजे जैसी डिजाइन बनी है नारंगी रंग की दो व्यक्ति सामने खड़े रहकर कुछ बोल रहे हैं।

और बगल में बहुत ज्यादा बाल एक तरफ मुड़े हुए है उस लड़के के पीछे साइड में दीवाल का रंग नारंगी है और ऊपर छत का रंग सफ़ेद है।

इसमें एक सफ़ेद कलर का बड़ा सा मकान दिख रहा है जो दो अंजिला है बीच में एक लम्बी सी पट्टी बनी हुई है सामने कुछ--

सामने की तरफ नीचे एक गणेश जी की और कुछ और देवी जी की मूर्ति--

छत के ऊपर में टिन जैसा कुछ दिख रहा है हल्के हरे रंग का और चारो फ्लोर पर कुछ सामान रखा हुआ है।

सीमेंट का बना डीवाईडर है जो काले और पीले रंग के पट्टो से बना है पीछे की तरफ एक बड़ी सी दुकान दिख रही है।

भी हुक में टंगी हुई है जो रंग-बिरंगी है बाकी के आस-पास के इसमें--

और बाउंड्री वाल भी सफ़ेद रंग और लाल रंग के पट्टो से बनी है दो महिलाये और दो पुरुष हैं इसमें सामने की ओर दिख रहै है ।